यहां एक लोहे का ब्रिज बना हुआ है और उसके बाजू में एक येलो कलर का क्रेन है।

यह एक जिम में बहुत सारी लाइट लगी है इसकी दिवाली सफेद है।

यह एक टावर है यह केन्सा टावर है जहां पे बहोत सारे लोहे के अ -अ ज्वाइंट दिये गये है जालियां दी गई है यहां पे ट्यूबलाइट जैसे चार-छे ठो पिलर भी दिए गए हैं।

बिल्डिंग जैसी दिख रही है यहां पर बहुत सारे झाड़ -पेड़ लगे हैं बिल्डिंग का कलर हाफ व्हाइट कलर से पोता है इसके दरवाज़े और खिड़की ब्लैक कलर की दिख रही है।

ये एक बहुत बड़ा मॉल है जहाँ पे गेह चावल और दल की बोरियाँ रखी हुई है जहा पे एक ट्राली भी रखी हुई है जिसपे प्याज रखी हुई है। यहाँ पे--

यहाँ पे एक मेला लगा हुआ है जहाँ पे कटपुली का खेल चल रहा है यहाँ की कत्पुत्लियाँ पीले और लाल कलर की है।

इसमें येलो ऑरेंज कलर से इसको डेकोरेट किया गया है इसमें कांच लगी हुई है और खिड़कियों में गोल्डन कलर के परदे लगे हुए हैं एक पेड़ है जो तिरछा है।

एक जिसकी ओपनिंग हुई है यहाँ पे बैलून वाइट येल्लो और पिंक और ऑरेंज कलर की लगी हुई यहाँ पर--

यहां पे सनफ्लोवर पौधे की खेती की गई है यहां ये फूलअ-पिंघ-ए यह फूल येलो कलर का है यह-इसे सनफ्लॉवर बोलते है।

गेट पे शॉप है यहाँ पे बहुत सारी छोटी-छोटी शो पीस वाली मुर्तियाँ रखी हुई है एक हाथ वाली नाचती हुई कटपुतली भी रखी हुई है।